और पीछे के साइड में मंदिर सा स्ट्रक्चर बना हुआ है।

और पीछे कुछ एक मूर्ति भी खड़ी हुई है।

और इसके आगे काफी सारे बाइक वगैरह लगे हुए हैं।

मौसम बिल्कुल साफ नजर आता हुआ दिख रहा है।

और कुछ आदमी भी नजर आ रहे हैंहमें यहां पे।

और एक उसके बगल में भी एक दुकान दिखाई पड़ रहा है।

और सामने के साइड में एक पोस्टर भी लग---

और ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे है।

जो भारत पेट्रोलियम का लग रहा है।

जिस पे वॉकिंग मशीन दिखाई दे रहा है साइकलिंग मशीन भी है।

और यहां एक कुर्सी पे कुछ टीचर भी नजर आते हुए दिख रहा है।

और नारायण करके कुछ एक एडवर्टाइजमेंट भी दिख रहा है।

अगल-बगल इसके कुछ घास-फूस भी दिख रहे हैं।

बगल में एक बस भी दिख रही है।

जिसमें काफी सारे कपड़े दिखाई पड़ रहे है।

सामने के साइड में एक हिरण छपा हुआ टी_शर्ट भी है।

हां कुछ साइड में हेलमेट्स भी दिख रहे हैं।

यह एक सब्जी मंडी का पिक्चर नजर आ रहा है यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आप सी_सी_टी_वी कैमरा नजर में है।

सीलिंग वाइट और ब्राउन कलर की है।

और उसके दो पीछे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

और यहां पे एक सॉकेट बोर्ड भी दिख रहा है।

और इसके सामने एक मिरर और एक बॉक्स भी नजर आता हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

जो सफेद चादर से ढकी हुई है।

का एक लाइब्रेरी का फोटो है।

सामने में ढेर सारी किताबें हैं और साइड में रैक नजर आ रहा है।

जिसमें पीछे ब्लैक कलर की वाल नजर आ रही है।

और पीछे के साइड में दो व्यक्ति भी नजर आते हुए दिख रहे हैं।

हिंदुओं का त्यौहार मनाते दिख रहा है।

| इसमें मां दुर्गा की प्रतिमा साफ-साफ नजर आ रही है।

और ये बैथ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारे वेद दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे में काफी सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

और आसमान बिल्कुल यहां का साफ है।

और फिफटी नाइन के ऊपर एक स्ट्रीट पे एक लाइट है।

यहां सामने के साइड में एक अध्यापक पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।

और यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका नाम फिजिक है।

सामने के साइड में दो पिक्चर भी है।

और पीछे के साइड में एक गोल्डन कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

और यहां स्टेज पे सजावट काफी अच्छी की गई है।

इसके सामने साइड में एक मशीन लगा हुआ है।

और इसके अगल-बगल में भी दो-तीन मशीनें दिख रही हैं।